आई लव के_जे_स_टी माइंस ऐसा लिखा हुआ है।--

मेन गेट के बगल में चार चार खिड़की दोनों साइड में बनी हुई दिखाई दे रही है बाहर में एक मोटरसाइकिल भी खड़ा है।

घेरा गया है सिर्फ दीवाल के बाउंड्री के अंदर मेन को खुला छोड़ दिया गया है जिसमें सभी सफेद कलर के--

गाड़ी का तेल इत्यादि भी यहां पर दिखाई दे रहा है। सौंदर्दीकरण का समान है।

जो पहाड़ी एरिया का दृश्य दिखाई दे रहा है और यह पहाड़ से लगा हुआ पावर ग्रिड का ये स्टेशन बना हुआ है।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

देखने से पता चलता है कि बैंकिंग से संबंधित यह एक कार्यालय है।

पेड़-पौधे फूल के गमले भी रखे हुए है। एक साइड में टीम भी दिखाई दे रहा है।

फूलों का बगान लगा हुआ है जीसमें हरे हरे पौधे बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

ख्वाजा गरीब नवाज स्टोर्स ऐसा लिखा हुआ एक बोर्ड टंगा हुआ है।

किराने के दुकान में दो दरवाजे लगे हुए हैं दोनों शटर के दरवाजे दिखाई दे रहें--